का दुकान है जो की बहुत अच्छा लग रहा है कपड़ा का दुकान प्यारा लग रहा है सब कुछ ठीक-ठाक है यहाँ पर और सब बच्चा सब का यहाँ कपड़ा है।

घूमने मे भी बड़ा मजा आता है खूब सुंदर --

ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में ये तो पता ने का चीज का मोटा-सा बनाया गया है जो की बहुत सुंदर लग रहा है देखने में येल्लो येल्लो लग रहा है।

बहोत ज्यादा प्यारा भी मछली लग रहा है जो कि बहोत ढ़ेरी मछली रखा है ।

बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत प्यारा लग रहा है इ सारी बसे हैं जो की बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा बस है जो की बहुत सुंदर लग रहा है देखने में खूबसूरत भी लग रहे हैं बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है यहां का सीन भी अच्छा खासा है खूबसूरत भी है बहुत सुंदर है।

खूबसूरत भी लग रहा है हर चीज ठीक-ठाक है यहाँ का जगह भी बहुत सुंदर है।